बैठा हुआ है और यहाँ का कमरे का सफेद कलर हैं लाल कलर भी हैं यहाँ पर और चेयर रखा हुआ है यहाँ पर--

यहाँ पे भगवान जी का मूर्ति बना हुआ है और वहाँ पे लाइट्स जल रहे है सब भगवान जी के पास माला डला हुआ है।

ये एक मन्दिर हैं और यहाँ पर कुछ इंसान खड़ा हुआ हैं मन्दिर के अंदर भगवान जी बैठा हुआ है।

यहां पे एक रोड नजर आ रहा है रोड के साइड में एक घर दिख रहा है जो सफ़ेद कलर का है।